यहां पर बहोत सारे मोटरसाइकिल और स्कूटी स्कूटर है।

केसरी कलर का हुड पहन रखा है।

और यहां पर बहोत सारे बैट रखे गए हैं गाना बजाने के।

इस दीवार में पीले कलर की लाइन खींची हुई है।

एक व्यक्ति ने नीले कलर नीले रंग की कमीज पहनी हुई है।